ये देखने में कोई कॉफी शॉप लग रहा है वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। एल.एस.बी. का।

यहाँ सामने बहुत सारी औरतें हैं जो नृत्य करती है और पीछे में एक गोल्डेन मूर्ति है और इस साइड मे एक गमला भी है बहुत-सारे --